इस फोटो मे एक बाजार दिखाई पर रहा है जब सारे लोग चल रहे है कुछ साइकिल पर है एक मीनार दिखाई दे रही है जिसपर घड़ी है ऊपर झण्डा लहरा रहा है।

एक पेड़ यहाॅं पर लगा हुआ है बिजली का खम्भा है जोकि तारों से जुड़ा हुआ है।

पास में कुछ मिट्टी पड़ी हुई है एक टैम्पू खड़ा है आस-पास कुछ घर और दुकाने भी हैं पास में कुछ पेड़ है।

यहां एक नदी दिखाई दे रही है जिसके पास झरना बह रहा है।

यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के कपड़ों की दुकान दुकान है जिसपर अल_ई_डी लाइट और लाइटिंग लगी गई है। काले कलर की यहाँ सीढ़ियाँ है।